और बड़ा नीक सुन्दर अ झूला भी बा अलग अलग रंग के प्रकार के--

इ त कौनो मंदिर पिलर कुछ टाइप लगत ह। देखत बानी की लाल लाल बा। बड़ा बड़ा खूब निक लागत सुंदर लगता बाकी खूब डिजाइन विजाइन।

इहो देखा बानी की लगत ह कि जो ज़ू वू के ही नजारा बा कूल एक ठो कुछों लौकत बनी बत्तख वतख पानी वानी भी कुल बा |